इस फील्ड में हमें फुटबॉल खेलने का नट लगा है।

फील्ड के चारों तरफ पेड़ पौधे है।

इस तस्वीर में हमें जिम करने के बहुत सारे सामग्री दिखाई पड़ रहे हैं।

तालाब में कई सारे फूल खिले है।

फूल के बगल में कई अलग अलग आकार के पत्ते हैं।

के नीचे एन_सी_टी_ई रिकॉनाइज्ड एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड भी लिखा हुआ है।

टी_वी के साइड में एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है।

ट्रेन मे इंडियन रेलवेज़ लिखा हुआ है।

चर्च के बिल्डिंग के आगे बहुत सारे मनुष्य खड़े हैं।

पोस्टर में आसामी से कुछ लिखा हुआ है और एक महिला की तस्वीर है।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

उसी के बगल में हमें हरा रंग का बेग रखा है।

बिल्डिंग में हमें एक मनुष्य दिख रहा है।

इस प्लेटफार्म में हमें लाल रंग का एक घर जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

एल_इ_डी टी_वी के बगल में एक ए_सी लगा है वॉल में।

वर्कर्स घर बना रहे हैं।